इस पिक्चर में हमें कुछ यात्री आते जाते नजर आ र--

और कुछ खिड़की भी लगी हुई है।

और कुछ पहाड़ भी नजर आ--

नजर आ रहे हैं और बहुत सारी--

बहुत सारे यात्री खड़े हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमे बहुत सारे --

बहुत सारे यात्री भी दिखाई दे रहे हैं और--

जल भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही हैं।